कुछ खेल रहा है लड़की लोग ब्लू कलर का कपड़ा पहनी हुई है।

यह देखिए यहां पर बहोत बड़ा हॉल दिख रहा है।

एक टेबुल पे एक अह सरस्वती माता की मूर्ति भी है।

बिजली का पोल भी है एक टावर भी दिख रहा है।

छता भी लगा हुआ हैं दो स्टैन फैन भी है एक लोहे का साइकिल भी है।

नीचा में एक धरती पे पानी का बोतल गिरा हुआ है।

यह देखिए एक बड़ा सा नदी दिख रहा है।

बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

उसमें बहोत सारे खिड़की खुला हुआ है।

कुछ रखा हुआ तो कुछ टांगा हुआ है।

पहाड़ के नीचे बहोत सारा पत्थल गिरा हुआ है।

दुकान पर एक स्कैनर भी लगा हुआ--

एक फिरिज भी रखा हुआ है एक लाकर है।

एक भी दिया हुआ है एक सरस्वती माता का फोटो है।

कुछ डब्बा में रक्खा हुआ है तो कुछ प्लेट में रक्खा हुआ।

बगल में एक सरक पे बाइक लगा हुआ है।

ये देखिए यहां पर बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ है।

बुक सब बहुत रखा हुआ है।

दो टेडी बियर भी रखा हुआ है दीवार पे--